ये येलो और ब्लैक कलर के बैलून लगाए है।

अंदर बहोत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं।

यहाँ दूसरा मशीन के नीचे --

बाकी सफ़ेद कलर के हैं।

यह चित्र मस्ज़िद का चित्र है।

मूर्ति के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है।

ब्लू कलर या नीले कलर का बहुत उपयोग किया गया है।

फेविकोल है ग्लू है |

पीछे पेड़ भी है और कुछ लोग भी नाव में है।

और साथ में पीले कलर की भी पुताई यहाँ-वहाँ दिख रहा है।

दूर एक मज़दूर एक गड्ढे में दिख रहा है गड्ढे में ईटें दिख रही हैं।

से आगे एक बड़ी ईमारत बनी हुई है।

इस चित्र में बहोत सारे बेरिकेट्स लगे हुए हैं।

जिसम पे अंदर कुछ हिरण दिख रहे है।

काँच के दरवाजे दिख रहे है।

यह किसी लाइब्रेरी या बुक शॉप का चित्र है जी --

पीछे पर्पल कलर का सोफा दिख रहा है।